यहा तबला और विराए नजर आ रही है।

एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे दो--

यहाँ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला नजर आ रहा है उसके आस पास --